यह एक चूड़ी का दुकान है जिसमें बहोत सारे रंग बिरंगे चूड़ियां दिखाई दे रहीं हैं और फूलों के कुछ मालें भी दिखाई दे रहे है।

जिसमें से तीन पुरुष है एक महिला है और पीछे दो बच्चे भी दिखाई दे रहे है।

यह सामने एक ब्लू कलर का कुर्सी दिखाई दे रहा है उसके सामने एक बड़ा काठ का अलमीरा लगा हुआ है।

यहाँ सामने बहोत बड़े बड़े पिलर लगे हुए हैं जो पुराने ईटो के बने हुए हैं पिलर पे बोहोत सारे मूर्तिया भी दिखाई दे रहीं हैं सामने एक बोहोत बड़ा मूर्ति दिखाई दे रहा है यह टिन के चादरों से घिरा हुआ है।

सामने एक लड़का बैठा हुआ है जिसने कान मे उजले कलर का इयर फोन लगाया हुआ है।

यह एक बिग बाज़ार का द्र्श्य है जहाँ पे बहुत सारे एस्केलेटर दिखाइ दे रहे है।

पीछे बहोत बड़ा हरा-भरा बगीचा भी दिखाई दे रहा हैं।

यहां सामने बॉडी लोशन के बोहोत डब्बे रखे हुए है बॉडी लोशन के जो डब्बे है वो वेसलीन के है।

बहुत सारे दुकानदार बैठे हुए है यहां तरह तरह के कपड़े लगे हुए है।

ऊपर नीले कलर का आसमान दिखाई दे रहा हैं जो उजले बादलों से घिरी हुए हैं।